यह एक बहुत बड़ी रोड है। रोड पे बहुत सारी गाडी चल रही है। रिक्शा चल रही है साइकिल चल रही है। और एक्टिवा चल रही है।

यह एक सलूना है जिसकी दीवाल सफेद कलर की है ऊपर एक ए _सी लगा हुआ है और लाइट चालू है बाज मे बहुत सारे समान रखे हुए हैं।

निचे कुछ डॉक्टर है और सिस्टर खड़ी होकर के फोटो खिचवा रही है ये सब अपनी-अपनी यूनिफार्म मै है और एक मशीन रखा हुआ है जो फोटो मै दिख रहा है ओर जो बहुत हि प्यारा लग रहा है।